या दो ब्यक्ति है इसमें जो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और एक जाली भी टंगा गया टंगा गया है और रात के समय है अ बॉल भी जलाई जो जो जो खेलने वाले खिलाड़ी को अच्छी तरह से भी --